इसमें बहोत सारी कॉपी किताबे रखी हुई है।

ये शायद परचून की दुकान लग रही है परचून की दुकान पे भी ये सब सामान उपलब्ध होता है।

गुब्बारे लगे हुए हैं और बहुत सारे शीशे भी लगे हुए हैं यहां पे।

और यह एक कोई रेस्टोरेंट है यहां पे मेज रखी हुई है।

यहां पे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में तीन लोग दिखाई दे रहे हैं।

नीचे फरस दिखाई दे रहा है बहोत अच्छा ब्राउन कलर का।

इस चित्र में कागज के बने हुए कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कोई दुकान दिखाई दे रही है पे रूपी इंटरप्राइजेज ।

और उसके पास में एक परचून की दुकान भी दिखाई दे रही है।

जिसके बाहर चिप्स वगैरा वगैरा टंगे हुई है।

और यहां पे एक छत टिन टिन डली हुई है छत पे और यहां पे दुकान भी है एक साइड में।